ये गार्डन यहाँ पे छोटे -छोटे फूल लगे हुए है पेड़ -पौधे लगे हुए है बीच से एक सड़क जा रही है बड़े- बड़े बिजली के खम्भे लगे हुए है।

यह एक पार्लर है इसके ऊपर एक झूमर लगी हुई है लाइट लगी हुई है सामने एक टेबल रखी हुई है जिस पर कंप्यूटर रखे हुए है।

एक पूल बना हुआ है जिसके ऊपर बैठने के लिए स्टूल और कुर्सियाँ बनी हुई है सामने हरा - भरा --

यह एक मॉल है यहाँ पे बहोत सारे लोग खड़े हुए है दो कार्स रखी हुई है कुछ लोग सीट पे बैठे हुए है।

यह एक मंदिर है यहाँ पे लाइटे लगी हुई है ऊपर झंडे लगे हुए है ऊपर एक बड़ा- सा बोर्ड लगा हुआ है पिले रंग का--

यह एक बड़ा सा झूला है इसके चारो तरड़ बॉउंड्री है।

बन रहा है घर सामने एक बड़ा- सा पेड़ है।

आगे चलके एक बड़ा सा पेड़ है उसके पास में एक लाल और सफ़ेद रंग की एक बड़ी सी छतरी लगी। --

पास में से जीना गये हुए है उसके निचे बहुत सारा कबर खाना पड़ा हुआ है।

यह एक कार है इसे बहोत अच्छे से डेकोरेट किया गया है इसके दरवाजे और आगे फूल और मालाएं लगाई गई है।